यह फोटो किसी विलेज के एरिया की देखने को मिल रही है यह किसी पूजा पाठ की फोटो हमे देखने को मिल रही है।

पीछे की तरफ हमे बहुत सारे टेटू और वॉल देखने को मिल रही है आदमी के पीछे एक पर्दा भी देखने को मिल रहा है और यह किसी बर्थडे पार्टी की फोटो हमे लग रही है।

पीछे की तरफ एक घर भी हमें इस फोटो में देखने को मिल रहा है।

जहाँ पर एक फ़ूड सेण्टर है उसके आगे लोग खड़े हुए है फ़ूड सेण्टर का कलर रेड एंड वाइट दिखाई दे रहा है और यह किसी रेलवे स्टेशन की फोटो लग रही है जो कि सुन्दर लग रही है।

बच्चे पढ़ते हुए बहुत ही लग रहे है पीछे की तरफ दो तीन पोस्टर चिपे हुए है और ये देखने में बहुत सुन्दर है।

बाहर की तरह व्हाइट कलर के बहुत ही सुन्दर गुड्डे दिख रहे है ऊपर की तरफ हमे खुला आसमान दिख रहा है टेंट के अंदर हमे बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे है।

यह फोटो बाहर से ली हुई लग रही है जिस मे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे है।